साइड साइड में भी पौधा लगा हुआ है और बदले घेरे हुए हैं बहुत खूबसूरत जगह है ।

यह एक ए_टी_एम रूम का दृश्य है जहां पे ए_टी_एम से लोग पैसा निकाल रहे हैं।

वहां पे लोग जमा है आ बहुत बड़ा पेड़ है उसमें हरी पत्ती लगी हुई है।

और दिवाले है जमीन पक्के की है।

यहां पे और हरा हरा पेड़ भी लगे हुए हैं साइड साइड से।

और ऐसे भी खड़ी हैं बहुत सारा बैलून लगा हुआ है।

ऑरेंज वाइट हरा नीचे फर्श बिछा हुआ है ग्रीन कलर का कुछ लड़कियां खड़ी है डांस कर रही हैं यहां पे स्टेट--

पिंक बोर्ड बना हुआ है गेट और यहां पर बहुत सारा हाथी है और लोहा का भी गेट लगा हुआ बहुत--

और कच्चा जमीन है ईटा सयारा हुआ है।

कुछ घास टाइप का भी रखा हुआ है कुछ बाउंड्री लगा हुआ है।

और कुछ बासे गड़ा हुआ है और फूल पत्ती फ्लावर लगी हुई है।

बहुत सारे पेड़ पौधें है उसमें हरी हरी पत्तियां है गेट लोहे की है।

पहाड़ है पेड़ पेड़ में पत्ती है हरी हरी और पहाड़ है गाड़ी खड़ी--

इसमें बहुत सारा सामान भी रखा हुआ है और फूल पत्ती जितना खूबसूरत लग रहे हैं रखें--

यह एक बाहर का दृश्य है यहां सेविंग पुल लगा हुआ है उसमें बहुत सारा पानी भी है।

बस स्टेन है पीले रंग के कुछ पेंटिंग है कुछ ब्लू शीशा लगा हुआ है।

और बस भी खड़ी है ये एक स्टेन है बस का बहुत अच्छा।

बोर्ड भी दिख रहा है और कुछ पाइप के टाइप का कुछ नजर आ रहा है।